कुछ लेडीज़ भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। यह वॉटर पार्क में पानी भरा हुआ है और ये पानी बोहोत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। पीछे बोहोत ही अट्रैक्टिव झूले झूल धीरे दिखाई दे रहे हैं और पीके ते कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं आसमान बोहोत ही अच्छे दिखाई दे रहा है।

स्टेट बैंक ए.टी.एम लिखा हुआ है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास भी लगे हुए दिखाई दे रही हैं कुछ लेडीज भी दिखाई दे रही।

और यहाँ पे एक बकेट भी रखा है जो की येलो कलर का है उसके अंदर भी बहोत सारी मच्छी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे एक दादा दिखाई दे रहा है जिन्होंने लुंगी पहनी हुई है।

और पीछे देखने पर मझे बहोत सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और आसमान बिल्कुल साफ-सुथरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है जो की फोटो खींच रहा है अपने फोन पे और यह सेल्फ़ी लेते हुए दिखाई दे रहा है इसने स्वेटर पहना हुआ है कान मे हेड्फोन लगाई हुए है जो की व्हाइट कलर के हैं।

यहाँ पे दो लड़के सेल्फ़ी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे एक एक्सरर्साइज़ करते हुए दिखाई दे रहा है और एक चेस्ट प्रेस लगाते हुए दिख रहा है जोकि बारबेल से लगा रहा --